ए अंकल लूंगी पे खड़ा है।

आंटी है आंटी है आंटी है टकले अंकल है टकले अंकल है टकले अंकल है बाजू में अंकल है बाजू में अंकल है बाजू में अंकल है।

बहुत बड़ी इम इमारत है --

पाइप के ग्रीन कलर का पेड़ है --

ये क्रिश्चन का चर्च हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग व्हाईट कलर कपड़ा पहन के खड़े हैं।

और यहाँ पे सब बच्चे लोग रेसिंग के लिए तैयार हैं --